ये एक बेडरूम है और साइड टेबल है साइड टेबल पे अं जो है न वो--

ये पार्क की आउटर बाउंड्री के बाहिर जो है ना वो दरख्त वगैरह हैं और इस वक्त बिल्कुल सामने जो है ना एक दरख्त है और उसके जो है ना--

अअ बेस मैं अअ एक जगह बनी हुई है ओर उसके अंदर फूल वगेरह लगे हुए है और साथ लोहे के मतलब ऐंगल खड़े है

ये बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना ये एक एरिया है यहाँ पे जो है ना दीवारें वगैरह टूटी हुई हैं और पानी वगैरह खड़ा हुआ है मींस के गार्बेज एरिया और उसके बिल्कुल आगे--

अ अ जो है ना बाहर चीजे वगेरह लेके खा रहे है और बाहर जो है ना फ्रंट गेट पर गाड़िया वगेरह खड़ी है और --

इसके साथ साथ जो है ना बाकी सारी मार्केट है।

ये एक स्टेज है और इस पे मुक्तलिफ मूर्तियां जो है ना वो रखी गई है और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मूर्तियों की जो है ना वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं और--

बाइक खड़ी हुई है और शॉप्स जो हैं वह मोस्टली ऑफ है मींस के क्लोज शॉप्स हैं और बाहर जाना गाड़ी खड़ी है।